यहां पर एक मस्जिद बना हुआ है जिसका रंग लाल और हरा है।

इनमें एक आदमी ने ढोलक पकड़ी हुई है और एक रबला एक आदमी ने गिटार और सब पकड़ा हुआ है।

यहां पर एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसके पड़ोस में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारी गाड़ियां और वैन खड़ी हुई हैं।

जो की बड़ी भी है और छोटी भी है और बहुत सारी मछलियां कटी हुई भी पड़ी है।

यहाँ पर बहुत सारे लकड़ी के ब्लॉक्स बने हुए हैं।

इसके पीछे वाइट कलर की दीवार भी बनी हुई है।

यहां पर बहोत सारे ड्रॉवर्स बने हुए हैं जिनका रंग नारंगी है।

उनका भी रंग भूरा है और इस कमरे का रंग सफेद है।

जो कि पूजा कर रहे हैं और यहां पर तीन पुजारी जी भी हैं।

यहाँ पर बहुत सारे घोड़े बंधे हुए हैं और यहाँ पर दो नीले ड्रम भी रखे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारे गुब्बारे भी रखे हुए लगे हुए--

और इस पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी लिखा हुआ है।

एक चेयर भी पड़ी हुई हैं जिसका रंग लाल है और यहां पे एक डिब्बा भी रखा हुआ हैं।

यह एक बिल्डिंग की फोटो है जिसका रंग भूरा सफेद और ग्रे है।

बहोत सारी मोटरसाइकलस भी खड़ी है और एक स्कूटी भी खड़ी है।